यह एक मस्जिद का हरा दरवाजा है।

यह चित्र में एक बड़ी सारी सड़क पर--

उस दरवाजे के बीच में रास्ता है।

और चट्टानों के बीच में से पानी निकल रहा है।

ये चित्र एक पोर्ट गैलरी का हे ।

जिसके चारों ओर बड़े-बड़े सारे पेड़ लगे हैं।

जो कि ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

मस्जिद के पास में एक घर बना है।

और न नृत्य करती हुई दिख रही है।